जैसा की मै देख पा रही हु मुझे यहाँ पर एक इमारत दिखाई दे रही है जिसका रंग --

क्रीम और लाल है यहाँ पर हरे-हरे पेड़ दिखाई दे रहे है यहाँ पर एक छोटा-सा पार्क बना है जिसपे झूले लगे हुए है ।

टी शर्ट पहनी हुई है तथा नीले रंग की पेंट पहनी हुई है यहाँ पर हरे हरे पेड़ --

जैसा की मै देख पा रही हूँ मुझे यह एक चर्च दिखाई देता है जो कि सुन्दर लग रहा है यह चर्च सफ़ेद तथा भूरे रंग का है ।

जैसा की मै देख पा रही हूं मुझे यहाँ पर एक बाजार दिखाई दे रही है यह बाजार मछलियों की है यहाँ पर मछलियाँ बेची जा रही है।

जैसा की मै देख आ रही हु मुझे यहाँ पर एक इमारत दिखाइ दे रही है यह इमारत थोड़ी जर-जर तथा पुरानी है यहाँ पर इमारत का रंग बैंगनी है ।

जैसा की मै देख पा रही हु मुझे यहाँ पर एक इमारत दिखाई दे रही है जोकि बहोत जर-जर तथा पुरानी है ये कोई पुरानी--

इमारतों का रंग थोडा सा भूरा दिखाई पड़ता है बादल एकदम साफ़ हैं।

जिससे यहाँ पर रौशनी दिखाई दे रही है जमीन का रंग क्रीम है तथा काले रंग से पट्टियाँ बनी हुई हैं।

जैसा की मै देख पा रही हु मुझे यहाँ पर एक दूकान दिखाई दे रही है यहाँ पर गाड़ियों को बनाने से सम्बंधित सामान रखा हुआ है यहाँ पर एक --

जैसा की मै देख पा रही हु मुझे यहाँ पर एक आकृति दिखाई देती है यह एक मंदिर जैसा दिखाई देता है इसकी दीवार --

सीमेंट नुमा बनाई गयी है इस मंदिर के पीछे हरे - हरे उगते हुए दिखाई दे रहे है।

पत्थर रखे है यहाँ की दीवार का रंग काला है जिस पर शेतुशिरा लिखा हुआ है यहाँ पर हरे-हरे पेड़ भी दिखाई दे रहे है।